बाहर बहोत सारी स्कूटियाँ और बाइके खड़ी हैं जो कि नीले काले और सफेद कलर की स्कूटी बाइके हैं।

ओर इन घरों मे आते हैं और आराम से रहते हैं और यहाँ पे आपको होटल भी मिल जायेंगे और वेल क्लिंड जगह है।

और लगाई गयी है इसमे इसके बीच मे शायद एक मूर्ति भी बनेगी और बहुत सारी हरियाली भी है यहा।

यहां पर एक वाइट कलर का इलेक्ट्रिक रिक्शा खड़ा है।

ये रिक्शा बहुत जादा सुंदर लगता है और इस रिक्शे में आप लोग बैठा सकते हैं सवारियां और पैसा कमा सकते हैं |